अंदर की तरफ भी एक बिल्डिंग नजर आ रही है यहां रोड पर कुछ व्यक्ति चलते हुए नजर आ रहे हैं अंदर की तरफ काफी पेड़ नजर आ रहे हैं छोटी मोटी घास फूस भी काफी नजर आ रही है |

किया गया है इसके बाहर काफी अच्छा डिज़ाइन है। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ निकली हुई है साइड में काफी अच्छे स्टेप आउट बने हुए हैं।

बंगले की तरफ एक अंदर बिल्डिंग नजर-नजर आ रही है काफी बड़ी सी जो दो तीन मंजिला है | उसके अंदर का गेट भी है यहाँ बाहर कुछ गेट नजर आ रहा है जिसकी दीवारों पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

के अंदर सीट्स भी गुलाबी रंग की हैं | इसके शीशे पर माही लिखा हुआ नजर आ रहा है | पीछे की तरफ एक घर नजर आ रहा है और घर के साथ कुछ पेड़ भी लगे हुए नजर आ रहे हैं | यहाँ --